खम्बा दिखाई दे रहा है जिसपे लाइट लगी हुई है।

पीछे पेड़ नजर आ रहे हैं आसमान भी दिखाई दे रहा है |

ऊपर भी एक आदमी नजर आ रहा है जो कपड़े पकड़े हुए है ।

रोड पर ऑटो रिक्शा दिखाई दे रहे हैं साइकिल रखी हुई दिखाई दे रही है।

मकान नजर आ रहे हैं | सीढ़ियाँ दिख रही है |

एक जिम नजर आ रहा है एक टेलीविशन दिखाई दे रही है।

कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं आईना दिखाई दे रहा है।

एक पेन नजर आ रहा है।

पीछे कई सारी किताबें नजर आ रही हैं।

एक बड़ा मैदान नजर आ रहा है मैदान पर घास दिखाई दे रहे हैं।

पीछे कुछ पौधे दिखाई दे रहे हैं।

परदे दिखाई दे रहे हैं | नीले रंग की एक बड़ी बॉल दिखाई दे रही है |

खिड़की दिखाई दे रही है ए.टी.एम. लिखा हुआ नजर आ रहा है।

एक ग्राउंड दिखाई दे रहा है ग्राउंड पर एक साइकल नजर आ रही है।

एक हरे रंग की बेंच दिखाई दे रही है उस पर एक आदमी बैठा हुआ है।

कुछ लाल रंग की कुर्सियां दिखाई दे रही है सिलिंग पर पंखा नजर आ रहा है।

खम्भे नजर आ रहे हैं जिनपर लाइट लगी हुई है।

मकान नजर आ रहे हैं मकान पे बालकनी दिखाई दे रही है कुछ लोग नजर आ रहे हैं।

एक मैदान नजर आ रहा है उसमे सफ़ेद रंग के कपड़े पहने कई लोग नजर आ रहे हैं।

पीछे दीवाल नजर आ रही है कई इमारते नजर आ रही हैं।

खंभे नजर आ रहे है बेंच दिखाई दे रही है।

हार नजर आ रहा है सर पर मुकुट दिखाई दे रहा है।